घर बा द्वार बा गैस बा चारो ओर से रंगल बा उज्ज़र कलर से लाल हरिहर पेड़ बा पौधा बा दू तल्ला मकान बा लोहा के गेट लगावल बा --